दो व्यक्ति ए_टी_एम के बाहर वेट कर रहे हैं उनके आने का--

जो काफी ज्यादा वेल डेकोरेटेड हैं जहां वेलेंटाइंस की डेकोरेशन की गई हुई--

कोई क्राफ्ट वर्क कर रहे हैं और उनके टीचर उन्हे असाइन कर रहे हैं।

इंप्रेसिव तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है।

और ये एक नेचुरल ब्यूटी का बहोत ही अच्छा--

इस पिक्चर में एक सुपर मार्केट शो हो रहा है।

जैसा कि मैं इस पिक्चर में देख सकती हूं ये एक लाइब्रेरी की पिक्चर है जहां मल्टीपल बुक्स हैं।

उस बिल्डिंग की पिक्चर है और ये इंडियन चिली स्क्वायर काफी फेमस रेस्टोरेंट है।

जो की काफी ग्रीनी नजर आ रही हैं और बहोत सुंदर लग रहे हैं।

सेकंड फ्लोर में एक जिम दिखाई दे रहा है फिटनेस फोर्स के नेम से--

जैसा कि मैं इस पिक्चर में देख सकती हूं।

जैसा कि मैं इस पिक्चर में देख सकती हूं।

बच्चों की साइकल्स रखी हुई है।